इस मैदान के साइड में एक नदी है।

एक स्कूटी खड़ी है जिसका कलर ब्लैक है।

यहां पर कुछ आदमी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक नदी का दृश्य है।

एक लड़की है जिसने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

जिसका कलर व्हाइट है।

यहां पर बहुत सारे दवाइयां रखी गई हैं।

एक कुर्सी रखी गयी है। जिसका कलर ब्लैक है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

इस दुकान में बहुत सारे अलमारी रखे गए है।

एक पंखा लगा हुआ है जिसका कलर वाइट है इसके।

कुछ जलेपी रखी गई है।

इसके साइड में एक पाइप है जिसका कलर व्हाइट है।

यह एक रोड का दृश्य है।

इस रोड के साइड में बहुत से फोर व्हीलर मोटरसाइकल खड़े है।

इस होटल में एक कुर्सी है।

एक आदमी है जिसने ब्ल्यू कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

बेसिन का कलर वाइट है।

इसका नाम नगीना क्लॉथ इस्टोर्स एंड टेलर्स है जोकि पीले और वाइट कलर से लिखा गया है।